जैसा की पेड़ लगा रहा है फील्ड में लड़का खेल रहा है बहुत अच्छा-अच्छा लग रहा है।

स्कूल बस है और यहां पर ड्राइवर बैठा हुआ है और एक लोग उसका गाड़ी के सामने आया हुआ लग रहा है यह स्टॉप है।

यह भी लग रहा है कुछ बंगाल का लिखा हुआ यहाँ पे खाली पेड़ है और गेट खोले छे गेट बाइक से कोई जा रहा है।

यहां पर टायर है जमऊ का है --